ruby में वेरिएबल्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
वेरिएबल क्या है ruby में सक्रिय टाइपिंग
वेरिएबल घोषित करना
वेरिएबल के प्रकार बदलना
वेरिएबल का स्कोप क्या है
वेरिएबल के प्रकार
यहाँ हम उबंटु लिनक्स वर्जन 1204 ruby 193 उपयोग कर रहे हैं
इस ट्यूटोरियल के अनुकरण के लिए आपको लिनक्स में टर्मिनल का ज्ञान होना आवश्यक है
आपको irb की जानकारी होनी आवश्यक है
यदि नहीं तो सम्बंधित ट्यूटोरियल के लिए दिखाई गयी हमारी वेबसाइट पर जाएँ
अब मैं समझाउंगी कि वेरिएबल क्या है
वेरिएबल का उपयोग एक वैल्यू संचित करने के लिए होता है
वेरिएबल एक संदर्भ reference है जिसे नियुक्त कर सकते हैं
ध्यान दें कि ruby वेरिएबल्स केस सेंसिटिव हैं
वेरिएबल का नाम अर्थपूर्ण होना चाहिए
वेरिएबल नाम में केवल लोअरकेस लेटर्स नम्बर्स अंडरस्कोर्स होते हैं ex : first_name
अब देखते हैं सक्रीय टाइपिंग क्या है
ruby एक सक्रीय टाइप्ड भाषा है
इसका मतलब कि आपको वेरिएबल बनाते समय डेटाटाइप बताने की आवशयकता नहीं है
rubyइंटरप्रेटर नियत कार्य के समय डेटा टाइप निर्धारित करता है
अब देखते हैं कि ruby में वेरिएबल कैसे निर्धारित करें
एकसाथ ctrl alt और t कीज़ दबाकर टर्मिनल खोलें
आपके स्क्रीन पर टर्मिनल विंडो प्रदर्शित होती है
अब irb टाइप करें
इंटरैक्टिव ruby आरम्भ के लिए एंटर दबाएं
अब टाइप करें var1 equal to 10 और एंटर दबाएं
यहाँ हमने एक वेरिएबल var1 घोषित किया और उसकी वैल्यू 10 निर्धारित की
अब जाँचते हैं कि इंटरप्रेटर द्वारा दिया गया डेटाटाइप इंटीजर है या नहीं
अब टाइप करें var1 dot kind_underscore of question mark integer और एंटर दबाएं
हमें आउटपुट true की तरह मिलेगा
ruby में वेरिएबल टाइप को सक्रियता से बदल सकते हैं
ऐसा करने के लिए इसकी एक नयी वैल्यू निर्धारित करें
इसको var 1 को एक string वैल्यू निर्धारित करके करें
टाइप करें var1 equal to डबल कोट्स में hello और एंटर दबाएं
निर्धारित वेरिएबल टाइप को सत्यापित करें
टाइप करें var1 dot class
क्लास मेथड बताता है कि यह वेरिएबल किस क्लास का है अब एंटर दबाएं
हमें आउटपुट string मिलता है
ruby ने अपने आप से वेरिएबल टाइप को इन्टिजर से स्ट्रिंग में बदल दिया है
अब हम सीखेंगे कि वेरिएबल वैल्यू को भिन्न प्रकार से कैसे बदलें
वापस स्लाइड्स पर आएँ
ruby वेरिएबल क्लासेस में उनकी वैल्यूज को भिन्न प्रकार से बदलने की विधियाँ होती हैं
to_i मेथड वेरिएबल को इंटीजर में बदलने के लिए उपयोगी है
to _f मेथड वेरिएबल को फ्लोटिंग पॉइन्ट में बदलने के लिए उपयोगी है
to_s मेथड वेरिएबल को स्ट्रिंग string में बदलने में उपयोगी है
to_s मेथड नंबर बेस को आर्गुमेंट की तरह लेता है
रूपांतरण इस नंबर बेस पर निर्भर करता है
अब इसका अभ्यास करें
टर्मिनल पर जाएँ सबसे पहले टर्मिनल को क्लियर करें
irb कंसोल को क्लियर करने के लिए ctrl lदबाएँ
अब टाइप करें y is equal to 20 और एंटर दबाएं
यहाँ हम एक वेरिएबल y घोषित करते हैं और उसकी वैल्यू 20 निर्धारित करते हैं
यहाँ हम to_f मेथड उपयोग करके y को फ्लोटिंग पॉइन्ट वैल्यू में बदलेंगे
टाइप करें y dot to_f और एंटर दबाएं
हमें एक फ्लोट की तरह एक वैल्यू मिलती है
टाइप करें y dot to_s और एंटर दबाएं
हमें डबल कोट्स में आउटपुट 20 मिलता है
वेरिएबल y को बाइनरी फॉर्म में बदलने के लिए to_s मेथड में नंबर बेस 2 दें
पिछली कमांड में जाने के लिए अप एरो की दबाएं
टाइप करें ओपनिंग ब्रैकेट 2 क्लोजिंग ब्रैकेट और एंटर दबाएं
हमें बाइनरी फॉर्म में आउटपुट मिलता है
इसी तरह आप variable y को octal और hexadesimal फॉर्म में भी बदल सकते हैं
नंबर बेस को 8 या 16 में बदलकर
अपनी slides पर वापस आते हैं
अब हम सीखेंगे कि वेरिएबल स्कोप क्या होता है
स्कोप बताता है कि वेरिएबल को प्रोग्राम में कहाँ एक्सेस कर सकते हैं
ruby के चार तरह के वेरिएबल स्कोप होते हैं :
लोकल local ग्लोबल global
इंस्टैंस instance और
क्लास class
प्रत्येक वेरिएबल का प्रकार वेरिएबल नाम की शुरुआत में एक स्पेशल करैक्टर के द्वारा बताया जाता है
$ ग्लोबल वेरिएबल दर्शाता है
लोअर केस लेटर और अंडरस्कोर लोकल वेरिएबल दर्शाता है
@ इंस्टैंस वेरिएबल दर्शाते है
दो @@ सिंबल क्लास वेरिएबल दर्शाते हैं
अपर केस लेटर्स कांस्टेंट दर्शाता है
इसके बारे में हम विस्तार में अगले ट्यूटोरियल में सीखेंगे
इसके साथ हम स्पोकन ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं इसको सरांशित करते हैं
इस टुटोरिअल में हमने सीखा
एक वेरिएबल घोषित करना जैसे var 1 = 10
to_f to_s मेथड्स उपयोग करके वेरिएबल टाइप बदलना
भिन्न वेरिएबल स्कोप
नियतकार्य के रूप में
एक वेरिएबल घोषित करें और इसको octal और hexadecimal फॉर्म में बदलें
दिए गए लिंक पर उपलब्ध विडिओ को देखें
यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सरांशित करता है
अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं
spoken tutorial project team:
स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएं चलती है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
ज्यादा जानकारी के लिए contact@spokentutorialorg को लिखें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है
यह भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है
इस मिशन पर अधिक जानकारी दिए लिंक पर उपलब्ध है
आई आई टी मुंबई से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद